जो कि ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे है।

यह एक राज भवन नाम से जगह बनी है।

जहां पर एक बड़ा सा मैदान है।

और कुछ व्यक्ति सामने की तरफ--

बाहर की तरफ दो आदमी बैठे हुए है।